ये एक सड़क है इस सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही है इस सड़क के बगल में बहुत सारे दुकाने लगी हुई है और इन दुकानों को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है यह सड़क बहुत ही भीड़ भाड़ वाली है इस सड़क में बहुत सारे गाड़ियां जाते हैं।

यह एक बहोत बड़ा मैदान है इस मैदान में बहोत सारे लोग आये हुए हैं यहाँ एक आदमी खड़ा है और एक आदमी लेटा हुआ है यहाँ बहोत सारे झंडे भी लगे हुए हैं इस मैदान को चारों ओर से घेरा गया है और इस मैदान को सजाया गया है ।